याह बोहोत सारी मोटोरसायकले दिखाई दे राही है इ ए है पिछे बिल्डींगे जो मेडिकल दिखाई दे राही है उपर टेन्ट संपित कलर है और--

दिखाई दे रहे है जो हरे कलर के दिखाई दे रहे है और कुछ मोटर साइकल दिख रही है और ये कुछ लोग दिख रहे है ऊपर बादल है जो नीला पर्पल सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा--

यहा एक बिल्डिंग है जो मेहंदी कलर की और लाल कलर की दिख रही है यहा बहुत सारे लोग खड़े हुए है।

ये है और पिछे पेड पौधे दिखाई दे रहे है जो हरे कलर का दिखाई दे रहा है बिल्डिंग हरी औ --

बिल्डिंग है उसके उपर आधी सफेद आधी गुलाबी कलर कि दिक राही है राइट साईड पेड पौधे है।